नदी में लाइट लगी हुई है आस-पास पेड़ पौधे हैं।

शायद ये किसी मैकेनिक की दुकान है और वहा के नट्स रखे हुए है इतने सारे।

यह एक नदी या झील जैसा है पानी दिख रहा है आसपास पेड़ पौधे दिख रहे है।

और आसपास लेंटर हुआ है मलबे लगे हुए हैं।

एक इंसान बाइक पर फोन पर बात करते हुए जा रहा है ऑटो खड़ी है कार खड़ी है रिक्षा है।

यह एक फिश की दुकान है जहां पे एक दुकानदार बैठा हुआ है और आसपास फिश रखी हुई है।

यहाँ पे एक घर है जिसके टाइल्स का शायद काम चल रहा है ड्रिल मशीन से ज़मीन को इंसान खोद रहा है।

ये एक स्टैन्डर्ड कॉफी शॉप है जहा पे लकड़ी की चेयर्स लगी हुई है बड़ी सी टेबल है ये साइड मे एक और टेबल है।

जहा पे चार लड़किया बैठी हुई है दुकान मे एक येलो क टी-शर्ट मे एक बंदा दिख रहा है जो शायद दुकानदार हैं।

यहाँ चार लोग है एक अ व्हील वाला अ गाड़ी है जिसपे बढीया बडा सा टाइल्स वो लो-लोग लेके जा रहे है।

ब्लू कलर की पन्नी हिल जिसके ऊपर बहुत सी बेकार की फिश रखी हुई है मार्केट मे बहुत सारी भीड़ है ऊपर पन्नी लगी हुई हैं।

यहाँ एक होंडा की एक ग्रे कलर की कार खड़ी हुई हे एक अंकल उसको वॉश कर रहे है उसके व्हील्स में साबुन लगा रहे है।

यहाँ पे फिश मार्केट है फीश के साथ-साथ खेकडे भी दिख रहे हैं बहुत सारे लोग इसे खरीद रहे हैं और एक दुकानदार है जो कि मुस्लिम है।

पीछे एक भाई है जो फिश काट रहा है।

ये एक हॉस्पिटल है जहा पे पेशंट्स के बेड रखे हुए है डस्टबिन रखी हुयी है एक नर्स खड़ी है जो फाइल में कुछ देख रही है परदे लगे हुए है व्हाइट कलर के।